इस चित्र में आसमान दिखाई दे रहा है पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं और खुले जगह दिखाई दे रही है ।

इस चित्र में एक मंदिर दिखाई दे रहा है मंदिर के अंदर राधा कृष्ण की मूर्ति दिखाई दे रही है ।

इस चित्र में पेड़ दिखाई दे रहे है और खड़े खम्भे दिखाई दे रहे है और वहीँ पर कुछ कपड़े सुखाये न-नजर आ रहे है।

और नीचे लाल कलर की मैटर डाली हुई दिखाई दे रही है और यहाँ एक पहले-पहले से ऐसा लगता है धन्यवाद |